बोरी की चटाई बीछी हुई है और यहाँ पे बहोत सारे बच्चे और बच्चियां --

और देखिये कैप पेहने हुए | कैप पे जो बॉय लिखा हुआ है वाइट और ग्रे कलर का है और देखिये --

यह देखिए एक तालाब दिखाई दे रहा है छोटा-सा।

की मछली को बेच सके और कस्टमर को दिखाने के लिए कौन सी मछली पसंद आती है कस्टमर लेते हैं |

घर भी दिखाई देत हैं दुकान भी दिखाई दे रहे --

कैप पहने हुए ड्रेस पहने हुए हाथ में ग्लव्स --

और देखिये घाट पे बहुत सारे लाइट भी लगे हुए है और --

यह देखिये यह एक्सिस बैंक का ए.टी.एम. है और देखिये --

और देखिये इसके ऊपर जो सिल्वर कलर की ऊपर पट्टी बनाई है उसमे पंखी पंखे लगे हुए हैं और लाईट --

यह देखिये यह डी.जे. है।

यह देखिये एक मगरमछ हैऔर देखिये यह --

और देखिए यहाँ पे इस चहड़ने के लिए सीढ़ी है जो की प्लेटफॉर्म नंबर एक से दो तीन चार तक जाने का।